बड़ासा टॉवर नजर आ रहा है यहा पर धूप की किरने आ रही है जो की बहुत सुंदर लग रही है।

इस चित्र मे एक कार पार्किंग एरिया नजर आ रहा है यहाँ पर ढेर सारी कार पार्क की करे हुए है कारो का रंग सफेद है।

चित्र मे एक सुंदर सा फाउंटेन का पानी के फाउंटेन का नजारा नजर आ रहा है यहाँ-जहा पर ढेर सारे फॉउन्टेंस लगे हुए है फाउंटेन दूसरी और एक सुंदर सी --